ये मस्जिद है जो मुसलमानों का मस्जिद है और ये देखिये जो कि ये ग्राजीपुर --

ये देख सकते हैं आप डी.जे. है। ये देखिये यहाँ भी जो लाइटिंग ये जो पूरा दिख रहा है ये जो की लाइटिंग है। ये डी.जे. है। यहाँ पे इस न्-काफी अलग-अलग प्रकार की लाइटिंग निकलती है। देखिए काफी बड़े-बड़े डी.जे. हैं।

ये देखिये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बिल्डिंग दिख रही है जो कि स्कूल की बिल्डिंग है यहाँ पे देखिये ये बस भी खड़ी हुई है।